यहाँ पर सामने काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ऊपर टीन सेट बना हुआ हैं सामने काफी सारे--

ऊपर से पानी नीचे की तरफ बहके आ रहा है और बड़े - बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर उसमे खिड़कियां लगी हुई है। हीरो लिखा हुआ नीचे स्कूटी खड़ी हुई है--

यहाँ पर सामने एक दुकान बनी हुई है जिसमें नयन फैंसी स्टोर लिखा हुआ है ऊपर टिन सेट है।

फास्टेट रखी हुई है वहां पर कुछ झाड़ू रखे हुए ऊपर बोल लटक रही है बैनर लगा हुआ उसे तरफ कुछ पैकेट सी लटक रही है।

ऊपर टाइल्स लगे हुए दीवार पर बल्बस लगे हुए हैं।

उधर सामने काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर बादल दिख रहा है।

यहाँ पर सामने बहुत बड़ा झूला बना हुआ है।

टाइल्स जैसी डिजाइन लगे हुए हैं जिनमें लाइट भी लगी है।

यहाँ पे केबल की तरह बना हुआ है जहां पे कुर्सियों पे--

और सामने गेट लगा हुआ है एकल गाड़ी जैसी है जिसमें तस्वीर लगी हुई है।

सामने कुछ गमले रखे हुए हैं। पीछे बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है बाजू में रेलिंग बनी हुई है वहां पर कुछ फूल लगे हुए हैं। ऊपर बादल--

और सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमे सर्विस लिखा हुआ है बाजु में रेलिंग बनी हुई है और काफी बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

और खन के खाने में सामान जमा रखा हुआ है उधर भी बहुत सारा समान दिख रहा--

और लाइट वाले सफेद छोटे पाइपस से डाले हुए हैं और कुछ पिलर वाली छड़ी भी खड़ी हुई है।

पीछे पटिए जैसे लगे है काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं।